रहा है यहां पर बहुत सारे पहाड़ हैं।

पिक्चर में हमे नजर आ रहा है।

हमें नजर आ रहा है।

यहां पर बहुत सारे लोग हैं और --

एक बहोत बड़ा ले --